एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पुल भी दिया गया है।

हैं और यहां पर काफी अच्छा डेकोरेशन भी किया गया है।

के बगल एक लगी हुई है जिस पे ताला लगा हुआ--

इसके इसका पैटर्न हिंदू धार्मिक संस्था से लिया गया है।

यहां पर तरह तरह की पेस्ट्री रखी हुई हैं।

ट्रेन की पटरी के नीचे का व्यूव है।

और यहां पर स्पेमपर भी मिलते हैं।

यहां बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।

अन्यथा कुछ गमलों पर काई लगी हुई है।

लाइट ही लाइट है यहां पर हर तरफ उजाला है।

इसकी गाड़ियां और काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं अन्यथा यहां पर--

यहां पर एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहां --

मैंस की चड्डियाँ मिलती हैं।

यह एक मॉल का व्यू है।

एक बत्तकों बत्तक का कलर ब्लैक है।

अन्यथा कुछ लोग खड़े हुए हैं और यहां पर अ टेंट लगा हुआ है और टेन्ट --

दो लोग गेट खोल रहे हैं और एक इंसान बातें करते हुए जाता दिखाई दे रहा है।

अन्यथा यहां पर छोटी अलमारी है जिनके ऊपर काफी अच्छे गुलदस्ते रखे हुए हैं।

और यहां पर लाइट्स भी और फैंस भी लगे हुए हैं।

कुछ औज़ार के साथ और उसके पीछे कुछ लिक्विड टाइप के पो पाॅक्स रखे हु --

जहां पर कुछ पेरेंट्स खड़े हुए हैं और--

कार फाइनेंस की जाती है अन्यथा--

योगा करते देखे जा सकते हैं।

ऑरेंज है और यहाँ पर लकड़ी का डोर भी है।

कुछ पेड़ों की कटिंग की गई है काफी अच्छे--

और इस साइड की रोड कच्ची है और यहां पर लाइट लगी हुई है।

ये किसी तरीके की सोसाइटी है जहां--

और यहां पर रेड पाट मिलते हैं।

कॉपी तक बहुत कुछ और यहां पर एक आदमी सेल्फी ले रहा है।

इसपे कुछ लोग बैठे हुए है साइड में कार खड़ी है।

रिक्शा खड़ा है और एक अंकल साइकल से जा रहे है और --

पेड़ पौधे हरियाली ही हरियाली है और--

आगे फ्रंट पे सीढ़िया है चढ़ने के लिए जिनके अगल बगल--

यहां पर बहोत सारे बच्चे कुछ आर्ट बनाते हुए देखे जा सकते हैं और कुछ लोग फोटो खींचते हुए देखे जा सकते--

गाड़ी सर्विस की जाती हैं अन्यथा यहां पर छोटी रखी हुई है जहां पान मसाला मिलता है और अन्य परदार्थ ।

यहां एक आदमी चेकदार शर्ट और नीले पेंट में खड़ा फोन चला रहा है।

काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है यहां पर फ्लावर रखा हुआ है।

और ब्लू कांबिनेशन यूज़ किया गया है।

यहां कुछ लोग उस समाधि को देख रहे हैं।

गूगल पे और भी बहुत कुछ रखा हुआ है।

मेज और कुछ चेयर रखी हुई है और साइड में अलमारी है।